मंडी ह। मंडी में सब सब्जी बा। केरा बा धनिया बा आलू बा टमाटर बा बैगन बा।

दूगो लइका बान बत्ती जरा के ठाढ बाने। बड्ड़े मनता। बहुत सुदंर बा। पीछे बत्ती जरता। बहुत सुंदर बा। दूगो खंभा बा।

नदी में नाई बा। नाई बांसे से खेवता। बहुत अच्छा बा। ओपर बड़ी लोग बईठल बा। बहुत सुदर बा।